बड़ी सी दुकान बनी हुई है यहा सामने की तरफ काई सारे शोकेस बने हुए है इनके अंदर कुछ समान रखा हुआ है अलग- अलग किस्म का कुछ तलवारे कुछ मूर्तिया राखी हुई है।

यहां कुछ बोर्ड लगे हुए है सामने की तरफ एक बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है जिसका रंग कुछ नारंगी और नीला है काफी अच्छा लग --

आई एन एस लिखा हुआ है। कुछ एक बड़ा सा ब्लैक कलर का टेबल है इसके ऊपर गोल्डन कलर का कुछ रखा हुआ है।

पर काफी खूबसूरत पैंट किया गया है कुछ लाइने बनाई गई हैं अलग-अलग रंग की है जैसे की पर्पल ऑरेंज ग्रीन काफी खूबसूरत डिजाइन दिया गया है।

गुलाबी रंग का आसमान हो रहा है जो की बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है बहुत सारे यहां पर पेड़ लगे हुए हैं।